मुझे इस इमेज में एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है। ग्राउंड के आई साइड वाइट कलर की बाउंड्री है।

मुझे इस इमेज में बहुत सारी मूर्तियां दिखाई दे रही हैं और कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस इमेज में बहौत सारे व्यक्ति कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

ग्राउंड के अंदर हल्की-हल्की घांस है।

एवं छोटे-छोटे पेड़ भी लगे हुए हैं।

यह कॉलेज मेडिकल कॉलेज है।

एवं थोड़ी बहुत पत्तियाँ दिखाई दे रही है।

मुझे इस इमेज में दुकान दिखाई दे रही है।

एवं इलेक्ट्रॉनिक की दिख रही --

एक स्टील की रेलिंग भी दिखाई दे रही है।

इसमें थोड़ा बहुत आसमान भी दिखाई दे रहा --

एवं कुछ बोरियां दिखाई दे रही है।

और इसके लेफ्ट साइड में कुछ मकान भी दिखाई दे रहे है।

गुब्बारो का रंग ब्लू य रेड है।

जिसके पास एक बाइक है।

विंडो एवं गेट भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस इमेज में एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

बाबा ने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

जिम कि छत ब्लैक एवं येलो कलर की है।

इसमें आसमान भी दिखाई दे रहा है।

दुकान के बाहर एक गेट लगा हुआ है।

और इसके बाहर एक पोस्टर लगा--

इन बच्चों के पीछे से हल्की हल्की रोशनी आ रही --

मुझे इस इमेज में एक दुकान दिखाई दे रही हैं।

और ग्रीन घास भी दिखाई दे रही है।